आदि एक समारोह सथल के अंदर --

और हुक गाड़ी का इंजन का रंग हरा है।

अनेक प्रकार के फूल लगाए हुए हैं।

जहाँ पर एक डमी को कपडे पहनाये हुए है और उस डमी को एक--

लाल टी-शर्ट एक जीन्स की पेंट पहना रखी है।

यह दृश्य एक बस स्टैंड का है।

पंप के कर्मचारी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं।

पठार पर घूमते हुए नजर आ रही है।

यह दृश्य है एक दुकान का है।

यह है दृश्य किसी वाटिका का है।

और वाटिका के गेट को फूलो से सजा रखा है।

और यह मेगा मार्ट तीन मंजली बना हुआ है।

और यह है एक ऑथोरिसे सर्विस सेंटर है।

और वहा से लोग नदी--

और जिसका नाम है आर.बी.एस. --

इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स की है।

और यहाँ पर एल्क्ट्रिक आइटम और--

जैसे बैट गेंदे वॉलीबॉल --

जैसे मिक्कीमाउस एक--

किनारों पर कुछ पेड़-पौधे लगाए हुए हैं और साइड में एक --